छत दिखाई दे रही है छत पर पंख लगे हुए हैं और लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

मैदान पर एक नेट दिखाई दे रहा है और झूले भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसने सिर पर तो काले रंग की कैप पहन रखी है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने काले रंग का ब्लेजर पेहन रखा है।

और यहां पर बहोत सारे गिलास और चम्मच भी रखे हुए हैं।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

यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है और बहोत सारे घर भी दिखई दे रहे है।

चेयर के ऊपर पिंक रंग की गद्दियाँ रखी हुई हैं और टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

और लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।

प्लेट के ऊपर एक के ऊपर स्पून दिखाई दे रहे हैं।

और चेयर्स भी दिखाई दे रही हैं।